हमे भी अपनी भक्ति में लीन होना चाहिए।

तो जैसा कि आप सभी इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में एक काल्पनिक घटना दिखाई गई है की --

पेड़ पौधे में अगर पानी न पड़े तो वो कैसे रुक सुक रुके सके हो जाते है उनसे हमे --

उनको हमें सदा प्-पा हमेशा पानी देते रहना चाहिए की वो हरे-भरे रहे और हमे भी अच्छा --

साइकिल चलाते हुवे बाइक चलाते हुवे पैदल चलते हुवे सड़को पर दिख रहे है और बैंक के सामने हरा भड़ा --

पेड़ है और नीचे क्रम से स्कूटीयाँ --

तो जैसा कि आप सभी इस फ़ोटो को देख रहे हैं इस फ़ोटो में --

ये देखकर ये लग रहा है कि ये एक जनरल दुकान है। जनरल दुकान यानी की घर के --

सामग्री जहाँ सारे मिलते हो चने चना दूध दही मसाला झाडु बर्तन --

खींचे और अलग-अलग हिस्से दिख रहे है > और हर हिस्से अट्रैक्टिव लग रहे।

बोहोत ही लोग खेले जाते है।

तो जैसा कि आप इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में ये नाई अंकल इन अंकल का दाढ़ी --

जिसमे ये मेले में लगा हुआ ये आकर्षक झूला --

इस तरफ से उस तरफ नेटवर्क प्रोवाईड कर रहा है और एक नारियल अन्ना एक नारियल का पेड़ है और बीच में --

अच्छी खासी फसले किसानों ने बोई है जोकि बहोत ही सुंदर लग रहा है देखने में। हमारे --

इस चित्र में यह लड़की नृत्य कला कर रही है लाल वस्त्र पहन के लाल साड़ी पहन के जो की इस पे बहोत ही --

तो जैसे कि आप सब इस चित्र को देख रहे है ये चित्र --

को क्या ही कहना। ठंड में सब लोग कैसे स्वेटर टोपी --

मोजा पहन कर रेट पर बैठ कर --

जैसे की जनरेटर बिजली के कनेक्शन की जाने वाली सारी चीजें यहाँ पर ही --

और अगल बगल शांतता वाली जगह है।

टॉय है जिससे हम अक्सर खेला करते थे।

तो जैसा कि आप सब देख रहे हो यहाँ पर लाइबॉय ग्रीनज़रिंग अलग अलग --

प्रकार के अलग अलग कंपनी के अलग-अलग टाइप के सैनिटाइज़र हैंडवॉश फेसवॉश --

तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो यहाँ पर इत्ती सुंदर - सुंदर बिल्डिंग बनी हैं जोकि देखने में बहोत ही खूबसूरत लग रही है।

सौंदर्य घर कितना शानदार लग रहा है। इसके बारे में क्या ही कहे? इतनी सौंदर्य कि अब से बनाया हुआ ये घर इसके --

कोई नेता से बात कर रहे है।